चित्र मे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जहा पर उसका कोट ब्लैक कलर काले कलर का शुएस पीछे साइड डेकोरेशन है नीचे फिर साइड से --

इस चित्र में दो ऑटो नजर ए रई है बगल मे गेट बगल मे सिक्योरिटी गार्ड का होम है उसकी पीछे खंबा भी है झाड भी है बादल वाईट भी है बैनर भी है।

बगल में कही सारे सामान हैं ट्यूबलाइट हैं दीवाले काले कलर के हैं बगल में कैंडल जला हुआ है बगल में मिरर हैं जहाँ पर सामान रखा हुआ गया--

इस चित्र में व्यंकटेश बुक डेपो जहा पर एक बाइक पार्क है जहा पर बैनर भी है बादल है व्हाइट कलर के ब्लू कलर के दो माले के मंजिले है।

चित्र में यहाँ दो बाइक पार्क हैं जहाँ पर एक आदमी नजर में आ रहा हैं गजानन हेयर सैलून के पास वहा शटर ओपन हैं अगल बगल में शटर बंद हैं एक माले का घर हैं जहा रामचंद्र ऑटोमोबाइल उसी बगल में गजानन हेयर सैलून --

जमीने काले कलर की है हरे कलर की है चॉकलेटी कलर की है यहा समुन्दर ब्लू कलर का है पानी जैसा नजर आ रहा है घास है बगल मे।

चित्र में बाइक नजर आ रहा है जहाँ बाइक खड़ी हुई नाम में एस.बी.आय. बैंक का लोगो हैं जहाँ सैटरडे बंद हैं और--

यह चित्र में एक ऑटो वाला जहाँ नेहरू नगर का एक मंडप हैं घर जैसा बना हुआ सीडी हैं बगल में घास फुस हैं ऑटो वाला खड़ा हैं बगल में।

एक ऑटो वाला जा रहा हैं उसके बगल मे एक बहुत बडा गेट हैं गेट लाल कलर का दीवाले हैं ऑटो हैं और चल रहे हैं सामने एक बिजली का तार हैं बोहोत बड़ा अगल बगल में।